यहाँ सामने में ही एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और नीचे में बहुत सुंदर सजावट हुआ है ।

अ निचे मे एक रखी दिखाई दे रहे हैं निचे मे एक जेन्स खड़े दिखाई दे रहे है ।

यहाँ सामने में कुछ मजदुर लोग है जो काम कर रहे घर का काम घर बनाने का और ऊपर में जो छत ढलैया होने वाला है ।

यहाँ पे लोहा का रड बिछाया हुआ है ढेर सारा और यहाँ पे जेन्स लोग खड़े दिखाई दे रहे है जो काम कर रहे है यहाँ पे कुछ --

लोग बैठे हुए है फील्ड में जहाँ-तहाँ ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ।

ऊपर में भी कुछ टाँगे हुए हैं बिस्कुट मिक्सचर रेड कलर का कुछ और भी टांगा हुआ हैं और यहाँ पे --

यहां एक कुछ बहुत ही इस तरफ में डांस कर रहे है खेल --

फुलौना से सजाया हुआ है रेड और ब्लू कलर की फुलौना सजाया हुआ है और यहाँ पे विंडोज भी दिखाई दे रहे हैं और ये जो --

ये जो नहर ये होता है जो पुल के निचे मे ये लोग हैं और पुल ऊपर में दिखाई दे रहा है इधर दीवाले है ऊपर पे कुछ पौधा भी दिखाई दे रहा है एक ठो --

बड़े ड्रेसेस पहनी हुए है और ये ड्रेस जो है पिंक कलर की है और वाइट कलर की है और पीछे मे ये --

यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर में पेंटिंग किया हुआ है यहाँ पे तीन --

पीला रेड कलर से रंगा हुआ है और सामने में एक गेट दिखाई दे रहा है इसके अंदर में कुछ रेड सा कुछ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक जेन्स दिखाई दे रहे है और ये जेन्स जो है रेड कलर का टी-शर्ट पहने है कैप वाला और नीचे --